मैनेजिंग ट्रेन टिकेट्स बाउट एटी आईआरसीटीसी यानिIRCTC पर खरीदे ट्रेन टिकट को प्रबंधित करने के इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि आईआरसीटीसी के पिछले ट्रांज़ैक्शन का प्रबंधन कैसे करें
हम देखेंगे कि टिकिटों की स्थिति कैसे जाँचें टिकट को कैसे प्रिंट करें टिकट को कैसे कैंसिल करे कैंसिल करने की हिस्ट्री और धन वापसी का स्वचालित ईमेल कैसे देखें
ट्रेन टिकट बुक कराने के लिए प्राइवेट यानि निजी वेबसाइट होती हैं
हम कुछ प्रचलित वेबसाइट देखेंगे
उनकी आईआरसीटीसी से तुलना करेंगे
अभी हम आईआरसीटीसी पर पहले की गयी बुकिंग देखेंगे मैं आईआरसीटीसी वेबसाइट पर लॉगिन करती हूँ

नीचे जाते हैं
मैं ट्रांज़ैक्शन्स लिंक पर क्लिक करती हूँ और यहाँ आपके पास बुक्ड हिस्ट्री विकल्प है
बुक्ड हिस्ट्री पर क्लिक करती हूँ यह पासवर्ड प्रविष्ट करने को कहता है
पासवर्ड प्रविष्ट करती हूँ
गो पर क्लिक करती हूँ
यह कहता है पन्र नंबर क्या है
टिकिटों की सूची यहाँ दी गयी है
मैं इस पर क्लिक करती हूँ और पन्र स्टेटस प्राप्त करती हूँ
यह बताता है वेट लिस्ट यानि प्रतीक्षा सूची 162 है
मैं इसे बंद करती हूँ मैं प्रिंट ले सकती हूँ इसे दबाती हूँ
ये यहाँ है अगर कहती हूँ कि इसे प्रिंट करो तो यह इसे प्रिंट करेगा
मैं अपनी स्लाइड पर वापस आ गयी हूँ
अब हम दूसरी स्लाइड पर जाते हैं
अब हम देखेंगे कि एक टिकट को कैंसिल कैसे कराते हैं
माना मुझे एक टिकट कैंसिल कराना है तो मैं क्या करती हूँ अतः इस टिकिट को कैंसिल करती हूँ अतः मैं इस टिकिट को कैंसिल करना चाहती हूँ इस टिकिट को सलेक्ट करती हूँ
मैं यह टिकिट नहीं चाहती
यह कहता है कैंसिल करने के लिए सलेक्ट करें
हमें यह सलेक्ट करना है उसका कारण है कि कभी कभी आप यात्रा के लिए एक से अधिक व्यक्तियों का टिकिट बुक करा सकते हैं
तो यह पृथक रूप से कैंसिल कराना संभव है माना दो व्यक्तियों का टिकिट है और आप किसी एक का टिकट कैंसिल कराना चाहते हैं
तो आपको केवल उसी व्यक्ति के बॉक्स पर क्लिक करना है
अतः इस पर क्लिक करें और फिर टिकिट कैंसिल करें
अब यह पूछता है कि क्या आप वास्तव में टिकिट कैंसिल करना चाहते हैं मैं ओके पर क्लिक करती हूँ
कैंसिलेशन का स्टेटस दिखता है
यह बताता है 20 रूपए कट गए हैं
89 नवासी रुपए चुकाये थे
वास्तव में मैंने 10 रूपए ऑनलाइन सेवाओं के लिए दिए थे
20 रूपए कटे
मुझे 69 उनहत्तर रूपए वापस मिले और ध्यान दें कि यह उसी अकाउंट में वापस किये जायेंगे जहाँ से आरम्भ में रूपए चुकाये गए थे
अगर आप चाहते हैं तो प्रिंट ले सकते हैं
मैं पूर्व विवरण यानि हिस्ट्री पर वापस जा सकती हूँ मैं स्लाइड्स पर वापस आ गयी हूँ
अब अगली स्लाइड पर जाते हैं
अब मैं समझाउंगी कि कैंसिलेशन का पूर्व विवरण यानी हिस्ट्री कैसे देखते हैं
अब जो मैं कर सकती हूँ वो है मैं कैंसल्ड हिस्ट्री को देख सकती हूँ
अब मैं अपना पासवर्ड प्रविष्ट करती हूँ
गो पर क्लिक करें
यह बताता है कैंसिल किये हुए की पन्र हिस्ट्री कैंसिलेशन के अगले दिन उपलब्ध होगी
लेकिन यह दिखाता हुआ लगता है
अतः सारे कैंसिल किये हुए टिकट यहाँ सूचीबद्ध होंगे
मैं स्लाइड्स पर वापस आती हूँ
अब दूसरी स्लाइड पर जाते हैं
मैं आपको रुपए वापसी का स्वचालित ईमेल दिखाउंगी
मैंने यह ईमेल पहले ही खोल लिया है
यह बताता है कि यहाँ दिए गए पन्र के लिए 69 रुपए वापस किये जायेंगे
मैं स्लाइड्स पर वापस आती हूँ
अब अगली स्लाइड पर जाते हैं
यहाँ ट्रेन बुकिंग के लिए कुछ उपयोगी निजी वेबसाइट हैं
हम अभी इन्हें देखेंगे
मैंने क्लीयर ट्रिप पहले ही खोल ली है
अब मैं आपको मेक माय ट्रिप पेज दिखाती हूँ
अब हम yatraकॉम का वेब पेज देखते हैं
अब स्लाइड्स पर वापस जाते हैं
अब मैं अगली स्लाइड्स पर जाती हूँ
हम आईआरसीटीसी की तुलना निजी वेबसाइट से करेंगे
आईआरसीटीसी के क्या फायदे हैं160
निजी वेबसाइट पर सारी ट्रेनों की सूची नहीं होती है
निजी वेबसाइट लगभग 20 रुपए ज़्यादा महँगी होती हैं
निजी वेबसाइट सुबह को देर से खुलती हैं आईआरसीटीसी की तुलना में प्राइवेट वेबसाइट कम समय के लिए ही उपलब्ध होती हैं
उदाहरणतः प्राइवेट वेबसाइट सुबह को 10 बजे खुलती है जबकि आईआरसीटीसी सुबह को 8 बजे खुलती है
अब हम निजी वेबसइट के फायदे देखेंगे
कभी कभी निजी वेबसाइट आईआरसीटीसी से अधिक तेज़ चलती है
निजी वेबसाइट पर विमान और बसों की टिकट भी बुक की जा सकती हैं
परिणामस्वरुप यात्रा से सम्बंधित सारी जानकारी एक ही स्थान से मिल सकती है
निजी वेबसाइट पिछली खोज को भी याद रख सकती हैं
अपने लिये मैं आईआरसीटीसी और निजी वेबसाइट दोनों का उपयोग करती हूँ
मैं स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट पर कुछ शब्द बोलना चाहती हूँ
httpspoken tutorialorgव्हाट इस स्पोकेन ट्यूटोरियल पर उपलब्ध वीडियो देखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी spoken tutorialorgnmeict इंट्रो पर उपलब्ध है
हम इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर आ गए हैं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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद